यहां मुझे फूल दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे एक बस दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक गैलरी दिखाई दे रही है।